और दो आदमी जा रहे हैं।

एक टोल टैक्स नजर आ रहा है।

जिसे जैसा चाहिए वैसा ही रंग मिल--

यहां पर सोने की चीजें मिलती हैं जिसको हम पेहेन सकते हैं।

उसका रंग सफेद और काला है।

यहां पर सब हरा भरा दिखता है।

यह कपड़ों की दुकान है जिसका नाम जोकी है।

यहां पर बहुत अच्छे तरीके से--

उसके पास और सामान भी पड़ा है।

वहां पर एक रिक्शे वाला भी खड़ा--

यहां पर अलग अलग तरह की मिठाइयां बनती हैं।

इसमें पनीर की सब्जी दाल की सब्जी और एक सूखी सब्जी है।

और टेप भी लगी हुई है।